ट्रेन है बस स्कूल बस है गाड़ी है ट्रक है।

कुर्सी है चे टेबल है चेयर है डस्टबिन है घास है आसमान है आदमी है टेबल है जंगल है।